इस तस्वीर में जो फोटो हैं यह एक नदी या डैम की फोटो लग रही हैं जिसमें एक लड़का ग्रे कलर की पैंट पहने हुआ हैं।

बहुत सारे चट्टान हैं चारों तरफ हरे भरे पेड़ है।

एक लाइट है सफेद रंग की दीवाल है एक पंखा है।